रोड के बगल में एक बड़ा-सा तलाब है कुछ पेड़-पौधे है जो देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।